साइड मुझे बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है। एक बाइसाइकल भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर वाल दिखाई दे रहा है उसके बाद मुझे--

उसके बाद मुझे बहुत सारा अले--

भी दे रहा है मुझे मुझे इस तस्वीर पर दीवार को--

मुझे इस तस्वीर में एक अंकल खड़ा किया हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारा इंसाने दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे बैलून भी दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे इस तस्वीर पर ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बैगनी रंग का साल पहना हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है।

उसके बाद मुझे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे इस तस्वीर पर--

शीशा का खिड़की भी दिख रहा है।